जिसमे बोहोत सारी टेबले रखी हुई हैं।

यहाँ पर हम देख सकते हें यहाँ पर एक लेडीज सैलून दिख रहा है।

और चेयर और बोट के आस-पास एक कत्थे कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

इस शॉप के अन्दर बोहोत सारी रैक बनी हुई हैं।

जैसा ही हम देख पा रहें यहाँ पर एक जिम है।

और रोड के ऊपर में देख सकते हैं की साइड में बिजली का खम्बा लगा है ।

और यहाँ लेफ्ट साइड में छोटे-छोटे झाड़ पेड़ --

यहाँ पर हमें एक रोड नज़र आ रहा है साफ़।

बस के नीचे से देख रहे है की बहुत सारे लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे --

और मैदान के सामने एक टेंट लगा हुआ और --

और काफी साफ़ सुथरी है और हरे कलर की जो है काली नीचे बिछी हुई है।

और पास में एक रोड है और रोड के ऊपर से रिक्शा निकल रही है।